ये बहोत ही ज्यादा बड़ा और महंगा पार्क है। इस पार्क में बहोत सारी स्लाईडें लगी हुई हैं और ये बहोत ही ज्यादा महंगी होती हैं।

और ये एक ग्राउंड का फोटो हैं और ये ग्राउंड बहुत ही ज़्यादा बड़ा लग रहा है। यहाँ पर लोग खेलने --

और यह ट्रेनर आपको बहुत ही ज्यादा सस्ते दाम पर मिल जाएगा और यहां पर हर प्रकार के बेंच प्रेस और डंबलस रखे हुए हैं बहुत ही ज्यादा बढ़िया जिम लग रही है ये।

ये एक या कोई बहोत ही ज्यादा बड़ी जगह का फोटू है और यहां पर बहोत सारी मशीनें भी रखी हुई हैं।